और काफी लोग जिम भी कर रहें हैं बहुत ही बड़ी जगह है। बहुत सारे सामान भी रखे गए हैं और एक आदमी इधर देख रहें है शायद वो सेल्फी ले रहे होंगे और यहाँ पे बहुत सारी मशीन भी है।